और पत्ते भी बहुत सारे इस पेड़ में है ।

व्हाइट कलर का कलर किया हुआ बहुत सुंदर पुल है पुल मे ऊपर मे आ उम कलर किया हुआ है।

और उसमें कुछ बुलु है। व्हाइट कलर का शर्ट है क्रीम कलर का पैंट पेहना हुआ है। ऑंख में चश्मा है। बोहोत सुंदर लग रहा है।

ऑटो भी लगा हुआ है। बस लगा हुआ है।

मछली काटने वाले मछली काट रहे है बहुत सारे हरे-हरे ड्राम --

एक आदमी का आधा मुंह सकल दिख रहा है ।